में कुछ कह नही सकता हूं और मोटरसाइकिल और साइकिल भी रखा हुआ है आस पास में और सब सही है और वो उप्पर में बिल्डिंग ये सब भी है नया देखने वाला और गुड सब है सब--

और लंबी दूरी के लिए बस मिलती है और अ-यहाँ पे एक मंदिर भी दिख रहा है।

और एक उसमें घर बना हुआ है। घर के नीचे चारों साइडें मोमबत्ती जल रही है और डिफरेंट डिफरेंट कलर अलग-अलग कलर की मोमबत्तियाँ हैं और अच्छा सा है।

ये है और एक लेडीज भी खड़ी है और पैसेंजर सब बस में भरा हुआ है और बस अब खुलने वाला है।

वो ढेर जैसा लग रहा है कि ढाबा है खाने की और ये सब भी तो ये--

यह एक बस स्टैंड है जहां की बस सब खरी है यात्रीगण डिफरेंट -डिफरेंट राज्य से आया हुआ है पेड़ सब भी है।